जिसके अंदर हमें कुछ पुराने जमाने की बिल्डिंग दिखाई दे सकते हैं।

इस चित्र में जो है वो काफी सारे पेड़ पौधे हैं सामने की तरफ जो है वो कई सारी गाड़ी रखी गई है।

और साथ साथ में चित्र के पीछे हमें कुछ एक अ कैफे दिखाई दे रहा है।

यह चित्र जो है वो एक शादी के मंडप का चित्र है।

अ यह चित्र हमें एक रिसेप्शन का चित्र लग रहा --

जहां पे काफी अच्छी तरीके से उजाले हैं लाइटिंग्स जल रहे हैं।

अ यह जो चित्र हैं वह एक अ घर का चित्र लग रहा है देखके तो।

चित्र के अंदर कुछ लाइट भी दिखाई दे रहे हैं। एक इस चित्र में बिजली का खंबा है।

और चित्र के अंदर चीजों को बहुत ही बेकार तरीके से रखा गया है।

अं चित्र के अंदर में दो सफेद कलर के जो है ओ पिलर देखने को मिल जाते हैं।

यह चित्र के अंदर हमें अ कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

आजू बाजू चारों तरफ जो है वो पत्थर वहां पे हैं काफी ऊंचे पत्थर--

नीचे वाले रेक में कई सारे डेरी मिल्क सिल्क के वहां पर पैकेट्स भी रखे गए हैं।

सोफा पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और सोफा के पीछे हमें हरियाली देखने को मिल सकती है कई घास वगैरा है।

अ इस चित्र के अंदर हमें यह देखने को मिल रहा है कि यह चित्र एक मोबाइल फोन की दुकान का है।

जहां भी कई सारे मोबाइल फोन जो है। वह सामने की तरफ डिस्प्ले में रखे गए हैं।

यहां जहां पे बहोत ही अच्छी तरीके से मंडप को सजाया गया --

यह चित्र एक खेत का चित्र है जहां पे फसल अ हाल ही में ही अ उगाए गए हैं।

और इसी चित्र के अंदर हमें एक अ गाड़ी भी यानी की फोर व्हीलर भी देखने को मिल जाता है।

उनकी हाथों में वीणा और अलग अलग अह लोग माइक के द्वारा वहां पे अपनी गाना गा रहे हैं।